अपना नीचे फर्श पे बिछाकर और योगा के जो स्टेप्स होती हैं वो स्टेप्स कर रही हैं।

ये इमेज किसी शॉप की है। किसी कपड़े की शॉप की इमेज है जहां पे एक डमी खड़ी हुई है।

ये इमेज किसी खाली सुनसान रोड की है।

और उन लोगों ने लहंगा चुनरी पहनी हुई है।

और वहां पर बहुत सा मजदूर वगैरह काम कर रहे क्योंकी वहाँ कन्स्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है।

चर्च का सिंबल बना हुआ है जहां पर उनकी जीसस फादर --

पैंक है। यहां पे एक शट लगी हुई है और यूनो ओन्ली नीड़ --

यह तस्वीर गणपति बप्पा की झांकी की है।

और ये क्-कोई कोचिंग इंस्टिट्यूसनस् का इंस्ट्रक्शा लग रहा है। कोचिंग्स् ही रहते है ऐसे।

यह किसी दुकान की तस्वीर है जहां पे ज्ञान दूध लिखा हुआ है।

पेंटिंग बनी हुई है और यह छोटी सी जगह है जो कि आंगन बाड़ी ही लग रही है।

यह तस्वीर किसी गोदाम की है जहां पर एक ट्रक खड़ा हुआ है।

जोकि खो-खो गेम खेल रहे हैं उनकी टीचर खड़ी हुई है जो कि उनको गाइड कर रही है बता रही है।